और बहुत से आदमी और महिलाएं और बच्चे भी प्रवेश कर रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा गणतंत्र द्वार है।

इसपर बहुत से रिक्शाएँ और बहुत से आदमी खड़े हुए हैं।

यह एक परचून की दुकान है

यह एक लकड़ी की मेज है।

यह एक बहुत बड़ा घर है।

इस घर में बहुत से दरवाजे लगे हुए हैं।

और एक बहुत बड़ा महल भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी ठेली लगाकर अमरुद बेच रहा है।

इस चित्र में एक लड़का सफेद और काली पैंट पहने बैठा हुआ है और उसके पीछे कुछ पानी का फुआरा बना हुआ है।

यह एक चिकन का ढ़ाब्बे की ठेली है।

और कुछ लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

यह एक वाशिंग मशीन की दुकान है।

और ऊपर छत में बहुत सी लाइटें भी जल रही है।

यह एक बहुत बड़ी रिपेयरिंग बाइकों की दुकान है।

इस दुकान में बहुत से गुब्बारे चूड़ियां और बहुत सी फूलों की माला--

इस मैदान में चार पांच बच्चे और एक टीचर खड़ा हुआ है।

और इसमें बहुत सी मशीने और कुछ डम्बल रखे हुए हैं।

आउटसाइड में एक लोहे का जाल भी लगा हुआ है।